और बोहोत अच्छा इधर लग रहा है। रोड जाने के लिए है। और और घर भी लग रहा है बना हुआ है। और कुछ भी नही।